के ईटें घर के किनारे बहुत बड़ा ग्राउंड है इस ग्राउंड में भी बहुत सारे ईटें रखे गये हैं ।

यह स्कूल है यह स्कूल काफी बड़ा है इस स्कूल के वरंडे में बहुत सारे ब्रेंच लगाए है यह ब्रेंचों पे बहुत सारे लड़का एवम प्रोजेक्ट बना रहे है यहाँ पर एक मेम भी खड़ी --

यह एक छोटी सी होटल है यह होटल में मिट - मछली बनते हैं यहाँ पर अनेक प्रकार के फ्रूट भी मिलते हैं यहाँ पर सभी आदमी इस अ ह दुकान में खाना खाने के लिए आते हैं ।